फ्लोर बना हुआ है लाइटे लगी हुई है नाइट का सीन दिखाई दे रहा है काफी अच्छा सुंदर वाटर फ्लोर है।

सैंपल है बहुत अच्छा टॉप फ्लोर पे और नाइट का सीन है चारों तरफ सिटी के अंदर लाइटें वाइटें जली हुई दिखाई दे रही है।